यह एक दुकान है दुकान मे कई सारे लोग खड़े है।

दुकान में लाइटे भी जल रही है।

यह एक कमरा है कमरे में दो पेंटिंग लगी है।

जिम में मैट बिछी हुई हैं।

जिम में कई सारे आईने लगे हैं।

यह एक कमरा है कमरे में कई सारी कुर्सी रखी हुई है।

यह एक कमरा है कमरे में कई सारे स्पीकर रखे हुए हैं।

जिम में कई सारी मशीनें रखी हुई हैं।

दुकान में हरी कलर की मेट बिछी हुई है दुकान में एक फ्रिज भी है।

गार्डन के बगल मैं सीमेंट का फर्स भी हैं।

और एक काउंटर रखा हुआ है। काउंटर के ऊपर लैपटॉप रखा है।

वो रूम में कइ सारे काउंटर रखे हुए है।

सीढी में रेलिंग भी लगी हुई है।

यह एक कमरा है कमरा में कई सारी औरतें योगा कर रही हैं।

एक काउंटर रखा हुआ है जिसमें लेपटॉप रखा है।

यह एक किचन है। किचन में--

और एक कांच भी रख लगा हुआ है और काफी सारे कवर्ड हुए हैं।

जिम में लाइट पंखा लगे हुए हैं।

तालाब के किनारे कई सारे पेड़ भी लगे हुएं हैं।

जिम में टाइल्स मिरर लगा हुआ हैं।

बच्चों के खेलने के लिए झूले भी लगे हैं।

और टाइल्स भी लगी हुई हैं।

घर में काफी सारी लाइट से लगी हुई है।

घर में पेड़ पौधे भी लगे हैं घर के बाहर सफेद रंग की कार खड़ी है।

सभी प्लेयर लाल नीले रंग की टी शर्ट पहने हैं।

यह एक सालून है सालून के अंदर दो तीन व्यक्ति खड़े हैं।

ये एक रूम हैं रूम में ऐ_सी लगा हुआ हैं।